यहाँ बच्चे विभिन्न प्रकार के चार्ट का प्रयोग करके तरह तरह की वस्तुएँ बना रहें हैं और ये कई तरह के चार्ट हैं कुछ अ गुलाबी कलर के हैं कुछ सफ़ेद कलर के हैं।

फिर उसमे ये अपने रंगों का प्रयोग करेंगे रंग बिरंगो का फीतों का और कई तरह की चीजों का प्रयोग करेंगे और उसे बहोत कुछ सीखने को भी मिलेगा इन लोगों को।

और यहां पर टीचर्स इनको गाइडेंस कर रही है अ लिखने का कार्य मतलब कि पढ़ने का कार्य दे रही है।

बहोत सारी स अम बहोत सारी वाहन भी यहाँ खड़े हुए है ये बहोत बड़ा विद्यालय है बहोत विशाल विद्यालय जहाँ पर कई सारे अध्यापक भी है और ये रोड है।

और बहोत से लोग चार तीन चार लोग जो है ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं कुछ अपनी मोबाइल की तरफ भी देख रहे हैं।

ये बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है पर कई तरह के झूले हैं स्विमिंग पूल भी है और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भी है चारों तरफ लाइट है सभी लोग बहुत --

यहां पर बच्चो का एग्जाम है कला का जिसमे सभी बच्चे अपने ड्राइंग पेपर पे बहुत सारी तरह-तरह की चीजे बना रहे है जिसमे से एक बच्चा जो है आगे दिया बना रहा।

कई व्यक्ति कतार में लाइन लगाए। शायद ये कोई ऑफिस है जहाँ पर सभी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। किसी के न किसी को कोइ काम का करवाना है। यहाँ एक व्यक्ति बाहर जा रहा है।

एक होटल है जहाँ पर लोग खाना खाने के लिए आते हैं केरला का होटल है यहाँ पर अ कुछ व्यक्ति ख उसके बहार खड़े हुए है कुछ अंदर है और यहाँ पर खुशी मना रहे है।

ये बहुत बड़ा गिरिजाघर है ये बहुत ही सुंदरता सजा हुआ है रंग-बिरंगे से कई सारे भीड़ है कई लोग यहां पर इकठ्ठा हुए है और सभी खुशी मना रहे है कुछ एक दूसरे को देख रहे है कोई दूसरे ज जगह देख रहे है।

और यहाँ पर जो सभी अध्यापिका है उनको ये सब चीजें सीखा रही है तो ये बहुत अच्छा है उनके लिए।

ये शकल से थोड़ा मुस्लमान लग रहे है लेकिन इनके चारो तरफ जोकि हरियाली है पेड़ पौधे है इनको बहुत ही सुंदरता का दृश्य दिख रहा है इस वजह से यहा पर ये सेल्फी ले रहे है और ये पॉइंटऑफ व्यू बहुत अच्छा है।

ये एक डिस्को बार है जहाँ पे कई महिलाए डांस कर रही हैं तरह-तरह के कपड़े पहनकर यहाँ पर हर तरह की लाइट जल रही है बुझ रही है और सभी यहाँ नृत --

यहाँ पे कुछ लोग त्यौहार मना रहे है बहुत भीड़ है यहाँ एक दूसरे पे रंग डाल रहे है और ये होली का त्यौहार है ये बहुत भीड़ है ये बहुत-त्यौहार बहुत उमंग का खुशी से मनाया जाता है लोग गुजिया खाते है लोग--